केबिन में दो व्यक्ति दिख दिखाई पड़ रहे हैं एक व्हाइट कलर की कुर्सी पे बैठे हुए इंसान है।

इस दृश्य में एक कमरा है जहां पे ढेर सारी कुर्सियां और टेबल लगे हुए हैं।

वहीं पे एक व्यक्ति मोटरबाइक से जा रहा है।

सामने पे एक भीम पे फोनपे का स्कैनर रखा हुआ है।

यह दृश्य एक स्टेशन परिसर का है जो कि लातेहार है।

इस दृश्य में एक कमरा है जिसकी कलर पिंक रंग की है।

वहीं पे एक व्यक्ति पिंक कलर की शर्ट पहने काले रंग की पैंट पहने कुर्सी पे बैठा हुआ है।

सामने एक शीशा दिखाई पड़ रहा है वहीं पे कोने पे एक आर_ओ भी लगा हुआ है।